चुन्नी भी ब्लू और पिंक ड्रेस पहनी है और तीनो ने काफी सुंदर सा लग रहे हैं डांस कर रही है।

बहुत से पेड़ पौधे हैं और ये मौसम बहुत सुंदर है आसमान पूरा ब्लू है।

जैसे में हम देख रहे हैं ये एक बाइक पार्किंग है।

और आस-पास भी बहोत सुंदर से सजा हुआ है और ऊपर पंखे लगा हुआ है बत्ती लगा हुआ है।

जैसे कि हम देख रहे है ये किताब की दुकान है जहां पे बहोत से लोग बैठकर--

किताब की दुकान में काफी लाइट है स्टार टाइप --